इस दृश्य में हॉल दिखाई दे रहा है।

हॉल के में वाइट कलर का पेंट किया गया है और मार्बल भी लगाया गया है।

और जो कि इस दृश्य को बहुत ही खूबसूरत बना रहा है।

और एक ऑटो भी लगा हुआ है।

और एट एइट फाइव हॉर्स भी लिखा हुआ है।

ओर शोरूम में स्कूटीज़ भी दिखाई दे रही है ।

और उसे रूम के दीवार में टाइल्स भी लगी हुई है।

इस दृश्य मे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है उसे बिल्डिंग का कलर व्हाइट है।

जो की कार्डबोर्ड के द्वारा बनाए गए हैं।

और वॉल फैन भी लगा हुआ है।

इस दृश्य में रुम दिखाई दे रहा है उस रूम के दीवार में मार्बल्स लगाए हुए हैं।

इस दृश्य में दुकान दिखाई दे रहे हैं।

और उन दुकान के बाहर लाइट्स भी लगे हुए हैं।

और उन चेयर्स में बहुत सारे अलग अलग कलर के कुशन्स भी रखे हुए--

इस दृश्य में पार्क दिखाई दे रहा है।

और एक कॉन्टर भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में एक कैंपस दिखाई दे रहा है।

और पानी का जार भी दिखाई दे रहा है और लैपटॉप भी--

इस दृश्य में एक रूम दिखाई दे रहा है।